मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
2019 की विदाई का पल हमारे सामने है
3 दिन के भीतरभीतर 2019 विदाई ले लेगा और हम ना सिर्फ 2020 में प्रवेश करेंगे नए साल में प्रवेश करेंगे नये दशक में प्रवेश करेंगे21वीं सदी के तीसरे दशक में प्रवेश करेंगे
मैं सभी देशवासियों को 2020 के लिए हार्दिक शुभकामनायें देता हूँ
इस दशक के बारे में एक बात तो निश्चित है इसमें देश के विकास को गति देने में वो लोग सक्रिय भूमिका निभायेंगे जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ है जो इस सदी के महत्वपूर्ण मुद्दों को समझते हुये बड़े हो रहे हैं
ऐसे युवाओं के लिए आज बहुत सारे शब्दों से पहचाना जाता है
कोई उन्हें मिलेनियल्स के रूप में जानता हैतो कुछ उन्हें जनरेशन ज़ या तो गेन ज़ ये भी कहते हैं
और व्यापक रूप से एक बात तो लोगों के दिमाग में फिट हो गई है कि ये सोशल मीडिया जनरेशन है
हम सब अनुभव करते हैं कि हमारी ये पीढ़ी बहुत ही प्रतिभाशाली है
कुछ नया करने का अलग करने का उसका ख्वाब रहता है
उसके अपने ओपिनियन भी होते हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है और विशेषकरके मैं भारत के बारे में कहना चाहूँगा कि इन दिनों युवाओं को हम देखते हैं तो वो व्यवस्था को पसंद करते हैं सिस्टम को पसंद करते हैं
इतना ही नहीं वे सिस्टम को फोलो भी करना पसंद करते हैं
और कभी कहीं सिस्टमproperly रिस्पोंड ना करें तो वे बैचेन भी हो जाते हैं और हिम्मत के साथसिस्टम को सवाल भी करते हैं
मैं इसे अच्छा मानता हूँ
एक बात तो पक्की है कि हमारे देश के युवाओं को हम ये भी कह सकते हैं अराजकता के प्रति नफ़रत है
अव्यवस्था अस्थिरता इसके प्रति उनको बड़ी चिढ़ है
वे परिवारवाद जातिवाद अपनापराया स्त्रीपुरुष इन भेदभावों को पसंद नहीं करते हैं
कभीकभी हम देखते हैं कि हवाई अड्डे पर या तो सिनेमा के थिएटर में भी अगर कोई कतार में खड़ा है और बीच में कोई घुस जाता है तो सबसे पहले आवाज उठाने वाले युवा ही होते हैं
और हमने तो देखा हैकि ऐसी कोई घटना होती है तो दूसरे नौजवान तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसकी वीडियो बना देते हैं और देखतेहीदेखते वो वीडियोviral भी हो जाता है
और जो गलती करता है वो महसूस करता है कि क्या हो गया तो एक नए प्रकार की व्यवस्था नए प्रकार का युग नए प्रकार की सोच इसको हमारी युवापीढ़ी परिलक्षित करती है
आज भारत को इस पीढ़ी से बहुत उम्मीदे हैं
इन्हीं युवाओं को देश को नई ऊँचाई पर ले जाना है
स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था माय फैथ इस इन थे यंगर जनरेशन थे मॉडर्न जनरेशन आउट ओएफ थेम विल कोम माय workers
उन्होंने कहा था मेरा विश्वास युवा पीढ़ी में है इस आधुनिक जनरेशन में है मॉडर्न जनरेशन में है और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया था इन्हीं में से मेरे कार्यकर्ता निकलेंगे
युवाओं के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा युवावस्था की कीमत को ना तो आँका जा सकता है और ना ही इसका वर्णन किया जा सकता है
यह जीवन का सबसे मूल्यवान कालखंड होता है
आपका भविष्य और आपका जीवन इस पर निर्भर करता है कि आप अपनी युवावस्था का उपयोग किस प्रकार करते हैं
विवेकानंद जी के अनुसार युवा वह है जो एनर्जी और डायनामिज्म से भरा है और बदलाव की ताकत रखता है
मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में यह दशक ये decadeन केवल युवाओं के विकास का होगा बल्कि युवाओं के सामर्थ्य से देश का विकास करने वाला भी साबित होगा और भारत आधुनिक बनाने में इस पीढ़ी की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली हैये मैं साफ अनुभव करता हूँ
आने वाली 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती पर जब देश युवादिवस मना रहा होगा तब प्रत्येक युवा इस दशक में अपने इस दायित्व पर जरुर चिंतन भी करे और इस दशक के लिए अवश्य कोई संकल्प भी ले
मेरे प्यारे देशवासियो आप में से कई लोगों को कन्याकुमारी में जिस रॉक पर स्वामी विवेकानंद जी ने अंतर्ध्यान किया था वहां परजो विवेकानंद रॉक मेमोरियल बना है उसके पचास वर्ष पूरे हो रहे हैं
पिछले पांच दशकों में यह स्थान भारत का गौरव रहा है
कन्याकुमारी देश और दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना है
राष्ट्रभक्ति से भरे हुए आध्यात्मिक चेतना को अनुभव करना चाहने वाले हर किसी के लिए ये एक तीर्थक्षेत्र बना हुआ है श्रद्धाकेंद्र बना हुआ है
स्वामीजी के स्मारक ने हर पन्थ हर आयु के वर्ग के लोगों को राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित किया है
दरिद्र नारायण की सेवा इस मन्त्र को जीने का रास्ता दिखाया है
जो भी वहां गया उसके अन्दर शक्ति का संचार हो सकरात्मकता का भाव जगे देश के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा हो ये बहुत स्वाभाविक है
हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जी भी पिछले दिनों इस पचास वर्ष निर्मित रॉक मेमोरियल का दौरा करके आए हैं और मुझे खुशी है कि हमारे उपराष्ट्रपति जी भी गुजरात के कच्छ के रण में जहाँ एक बहुत ही उत्तमरणोत्सवहोता है उसके उद्घाटन के लिए गए थे
जब हमारे राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति जी भी भारत में ही ऐसे महत्वपूर्ण टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं देशवासियों को उससे जरुर प्रेरणा मिलती है आप भी जरुर जाइये
मेरे प्यारे देशवासियो हम अलगअलग कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में स्कूल्स में पढ़ते तो हैं लेकिन पढाई पूरी होने के बाद अलुम्नी मीत एक बहुत ही सुहाना अवसर होता है और अलुम्नी मीतये सब नौजवान मिलकर के पुरानी यादों में खो जाते हैंजिनकी 10 साल 20 साल 25 साल पीछे चली जाती हैं
लेकिन कभीकभी ऐसी अलुम्नी मीत विशेष आकर्षण का कारण बन जाती है उस पर ध्यान जाता है और देशवासियों का भी ध्यान उस तरफ जाना बहुत जरुरी होता है
अलुम्नी मीत दरअसल पुराने दोस्तों के साथ मिलना यादों को ताज़ा करना इसका अपना एक अलग ही आनंद है और जब इसके साथ शेयर्ड परपज हो कोई संकल्प हो कोई भावात्मक लगाव जुड़ जाए फिर तो उसमें कई रंग भर जाते हैं
आपने देखा होगा कि अलुम्नी ग्रुप कभीकभी अपने स्कूलों के लिए कुछनकुछ योगदान देते हैं
कोई कम्प्यूटराइज्ड करने के लिए व्यवस्थायें खड़ी कर देते हैंकोई अच्छी लाइब्रेरी बना देते हैं कोई अच्छी पानी की सुविधायें खड़ी कर देते हैंकुछ लोग नए कमरे बनाने के लिए करते हैंकुछ लोग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए करते हैं
कुछनकुछ कर लेते हैं
उनको आनंद आता है कि जिस जगह पर अपनी ज़िन्दगी बनी उसके लिए जीवन में कुछ करना ये हर किसी के मन में रहता है और रहना भी चाहिएऔर इसके लिए लोग आगे भी आते हैं
लेकिन मैं आज किसी एक विशेष अवसर को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ आई अभी पिछले दिनों मीडिया में बिहार के पश्चिम चम्पारण जिले के भैरवगंज हेल्थ सेंटर की कहानी जब मैंने सुनी मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आप लोगों को बताये बिना रह नहीं सकता हूँ आई इस भैरवगंज हेल्थसेंटर के यानि स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में हेल्थ चेक यूपी करवाने के लिए आसपास के गांवों के हजारों लोगों की भीड़ जुट गई आई अब ये कोई बात सुन करके आपको आश्चर्य नहीं होगा
आपको लगता है इसमें क्या नई बात हैआये होंगे लोग जी नहीं बहुत कुछ नया है
ये कार्यक्रम सरकार का नहीं था न ही सरकार का इनिशिएटिव था
ये वहां के kर हिघ स्कूल उसके जो पूर्वछात्र थे उनकी जो अलुम्नी मीत थी उसके तहत उठाया गया कदम था और इसका नाम दिया था संकल्प नाइनटी फाइव
संकल्प नाइनटी फाइव का अर्थ है उस हिघ स्कूल के 1995 नाइनटीन नाइनटी फाइव बैच के विद्यार्थियों का संकल्प आई दरअसल इस बैच के विद्यार्थियों ने एक अलुम्नी मीत रखी और कुछ अलग करने के लिए सोचा Iइसमें पूर्वछात्रों ने समाज के लिए कुछ करने की ठानी और उन्होंने जिम्मा उठाया पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस का आईसंकल्प नाइनटी फाइव की इस मुहिम में बेतिया के सरकारी मेडिकल कॉलेज और कई अस्पताल भी जुड़ गये
उसके बाद तो जैसे जनस्वास्थ्य को लेकर एक पूरा अभियान ही चल पड़ा
निशुल्क जाँच हो मुफ्त में दवायें देना हो या फिर जागरूकता फ़ैलाने का संकल्प नाइनटी फाइव हर किसी के लिए एक मिसाल बनकर सामने आया है आई हम अक्सर ये बात कहते हैं कि जब देश का हर नागरिक एक कदम आगे बढ़ता है तो ये देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है आई ऐसी बातें जब समाज में प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिलती हैं तो हर किसी को आनंद आता है संतोष मिलता है और जीवन में कुछ करने की प्ररेणा भी मिलती है आई एक तरफ जहाँ बिहार के बेतिया मेंपूर्वछात्रों के समूह नेस्वास्थ्यसेवा का बीड़ा उठाया वहीं उत्तर प्रदेश के फूलपुर की कुछ महिलाओं ने अपनी जीवटता से पूरे इलाके को प्रेरणा दी है
इन महिलाओं ने साबित किया है कि अगर एकजुटता के साथ कोई संकल्प ले तो फिर परिस्थितियों को बदलने से कोई रोक नहीं सकता
कुछ समय पहले तक फूलपुर की ये महिलाएँ आर्थिक तंगी और गरीबी से परेशान थीं लेकिन इनमें अपने परिवार और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज़्बा था आई इन महिलाओं ने कादीपुर के स्वंय सहायता समूहWomen सेल्फ हेल्प ग्रुप उसके साथ जुड़कर चप्पल बनाने का हुनर सीखा इससे इन्होंने न सिर्फ अपने पैरों में चुभे मजबूरी के कांटे को निकाल फेंका बल्कि आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार का सम्बल भी बन गईं आई ग्रामीण आजीविका मिशन की मदद से अब तो यहाँ चप्पल बनाने काplant भीस्थापित हो गया है जहाँ आधुनिक मशीनों से चप्पलें बनाई जा रही हैं
मैं विशेष रूप से स्थानीय पुलिस और उनके परिवारों को भी बधाई देता हूँ उन्होंने अपने लिए और अपने परिजनों के लिए इन महिलाओं द्वारा बनाई गई चप्पलों को खरीदकर इनको प्रोत्साहित किया है
आज इन महिलाओं के संकल्प से न केवल उनके परिवार के आर्थिक हालत मजबूत हुए हैं बल्कि जीवन स्तर भी ऊँचा उठा है आई जब फूलपुर के पुलिस के जवानों की या उनके परिवारजनों की बातें सुनता हूँ तो आपको याद होगा कि मैंने लाल किले से 15 अगस्त को देशवासियों को एक बात के लिए आग्रह किया था और मैंने कहा था कि हम देशवासी लोकल खरीदने का आग्रह रखें
आज फिर से एक बार मेरा सुझाव है क्या हम स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों को प्रोत्साहन दे सकते हैं क्या अपनी खरीदारी में उन्हें प्राथमिकता दे सकतें हैं क्या हम लोकल प्रोडक्ट्स को अपनी प्रतिष्ठा और शान से जोड़ सकते हैं क्या हम इस भावना के साथ अपने साथी देशवासियों के लिए समृद्धि लाने का माध्यम बन सकते हैं साथियो महात्मा गाँधी ने स्वदेशी की इस भावना को एक ऐसे दीपक के रूप में देखा जो लाखों लोगों के जीवन को रोशन करता हो
ग़रीबसेग़रीब के जीवन में समृद्धि लाता हो
सौसाल पहले गाँधी जी ने एक बड़ा जनआन्दोलन शुरू किया था
इसका एक लक्ष्य था भारतीय उत्पादों को प्रोत्साहित करना
आत्मनिर्भर बनने का यही रास्ता गाँधी जी ने दिखाया था
दो हज़ार बाईस 2022 में हम हमारी आज़ादी के 75 साल पूरे करेंगे
जिस आज़ाद भारत में हम सांस ले रहे हैं उस भारत को आज़ाद कराने के लिए लक्ष्यावधि सपूतोंने बेटेबेटियों ने अनेक यातनाएं सही हैं अनेकों ने प्राण की आहुति दी है
लक्ष्यावधि लोगों के त्याग तपस्या बलिदान के कारण जहाँ आज़ादी मिली जिस आज़ादी का हम भरपूर लाभ उठा रहे हैं आज़ाद ज़िन्दगी हम जी रहे हैं और देश के लिए मरमिटने वाले देश के लिए जीवन खपाने वाले नामीअनामी अनगिनत लोग शायद मुश्किल से हम बहुत कम ही लोगों के नाम जानते होंगे लेकिन उन्होंने बलिदान दिया उस सपनों को ले करके आज़ाद भारत के सपनों को ले करके समृद्ध सुखी सम्पन्न आज़ाद भारत के लिए
मेरे प्यारे देशवासियो क्या हम संकल्प कर सकते हैं कि 2022 आज़ादी के 75 वर्ष हो रहे हैं कमसेकम ये दोतीन साल हम स्थानीय उत्पाद खरीदने के आग्रही बनें भारत में बना हमारे देशवासियों के हाथों से बना हमारे देशवासियों के पसीने की जिसमें महक हो ऐसी चीजों को हम खरीद करने का आग्रह कर सकते हैं क्या मैं लम्बे समय के लिए नहीं कहता हूँ सिर्फ 2022 तक आज़ादी के 75 साल हो तब तक
और ये काम सरकारी नहीं होना चाहिए स्थानस्थान पर नौजवान आगे आएं छोटेछोटे संगठन बनायें लोगों को प्रेरित करें समझाएं और तय करें आओ हम लोकल खरीदेंगे स्थानीय उत्पादों पर बल देंगे देशवासियों के पसीने की जिसमें महक हो वही मेरे आज़ाद भारत का सुहाना पल हो इन सपनों को लेकर के हम चलें
मेरे प्यारे देशवासियों यह हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि देश के नागरिक आत्मनिर्भर बनें और सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करें
मैं एक ऐसे पहल की चर्चा करना चाहूँगा जिसने मेरा ध्यान खींचा और वो पहल है जम्मूकश्मीर और लद्दाख का हिमायत प्रोग्राम
हिमायत दरअसल स्किल डेवलपमेंट और रोज़गार से जुड़ा है
इसमें 15 से 35 वर्ष तक के किशोर और युवा शामिल होते हैं
ये जम्मूकश्मीर के वे लोग हैं जिनकी पढाई किसी कारण पूरी नहीं हो पाई जिन्हें बीच में ही स्कूलकॉलेज छोड़ना पड़ा
मेरे प्यारे देशवासियो आपको जानकर के बहुत अच्छा लगेगा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले दो सालों में अठारह हज़ार युवाओं को77 सेवेंटी सेवेन अलगअलग ट्रेड में प्रशिक्षण दिया गया है
इनमें से क़रीब पाँच हज़ार लोग तो कहींनकहीं जॉब कर रहे हैं और बहुत सारे स्वरोजगार की ओर आगे बढे हैं
हिमायत प्रोग्राम से अपना जीवन बदलने वाले इन लोगों की जो कहानियां सुनने को मिली हैं वे सचमुच ह्रदय को छू लेती हैं
परवीन फ़ातिमा तमिलनाडु के त्रिपुर की एक गारमेंट यूनिट में प्रोमोशन के बाद सुपरवाइजरकमकोर्डिनेटर बनी हैं
एक साल पहले तक वो करगिल के एक छोटे से गाँव में रह रही थी
आज उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया आत्मविश्वास आया वह आत्मनिर्भर हुई है और अपने पूरे परिवार के लिए भी आर्थिक तरक्की का अवसर लेकर आई है
परवीन फ़ातिमा की तरह ही हिमायत प्रोग्राम ने लेहलद्दाख क्षेत्र के निवासी अन्य बेटियों का भी भाग्य बदला है और ये सभी आज तमिलनाडु की उसी फार्म में काम कर रहे हैं
इसी तरह हिमायत डोडा के फियाज़ अहमद के लिए वरदान बन के आया
फियाज़ ने 2012 में 12वीं की परीक्षा पास की लेकिन बीमारी के कारणवो अपनी पढाई जारी नहीं रख सके
फियाज़दो साल तक हृदय की बीमारी से जूझते रहे
इस बीच उनके एक भाई और एक बहन की मृत्यु भी हो गई
एक तरह से उनके परिवार पर परेशानियों का पहाड़ टूट गया
आखिरकार उन्हें हिमायत से मदद मिली
हिमायत के ज़रिये आइट्स यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिनेबल्ड servicesमें ट्रेनिंग मिली और वे आज पंजाब में नौकरी कर रहे हैं
फियाज़ अहमद की ग्रेजुएशन की पढाई जो उन्होंने साथसाथ जारी रखी वह भी अब पूरी होने वाली है
हाल ही में हिमायत के एक कार्यक्रम में उन्हें अपना अनुभव साझा करने के लिए बुलाया गया
अपनी कहानी सुनाते समय उनकी आँखों में से आंसू छलक आये
इसी तरह अनंतनाग के रकीबउलरहमान आर्थिक तंगी के चलते अपनी पढाई पूरी नहीं कर पाये
एक दिनरकीब को अपने ब्लॉक में जो एक कैंप लगा था मोबिलाइजेशन कैम्प उसके जरिये हिमायत कार्यक्रम का पता चला
रकीब ने तुरंत रिटेल टीम लीडर कोर्स में दाखिला ले लिया
यहाँ ट्रेनिग पूरी करने बाद आज वो एक कॉर्पोरेट हाउस में नौकरी कर रहे हैं
हिमायत मिशन से लाभान्वित प्रतिभाशाली युवाओं के ऐसे कई उदाहरण हैं जो जम्मूकश्मीर में परिवर्तन के प्रतीक बने हैं
हिमायत कार्यक्रम सरकार ट्रैनिंग पार्टनर नौकरी देने वाली कम्पनियाँ और जम्मूकश्मीर के लोगों के बीच एक बेहतरीन तालमेल का आदर्श उदाहरण है
इस कार्यक्रम ने जम्मूकश्मीर में युवाओं के अन्दर एक नया आत्मविश्वास जगाया है और आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त किया
मेरे प्यारे देशवासियों 26 तारीख को हमने इस दशक का आख़िरी सूर्यग्रहण देखा
शायद सूर्यग्रहण की इस घटना के कारण ही माय गोव पर रिपुन ने बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट लिखा है
वे लिखते हैं नमस्कार सर मेरा नाम रिपुन है मैं नॉर्थईस्ट का रहने वाला हूँ लेकिन इन दिनों साउथ में काम करता हूँ
एक बात मैं आप से शेयर करना चाहता हूँ
मुझे याद है हमारे क्षेत्र में आसमान साफ़ होने की वजह से हम घंटों आसमान में तारों पर टकटकी लगाये रखते थे
स्टार गेजिंग मुझे बहुत अच्छा लगता था
अब मैं एक प्रोफेशनल हूँ और अपनी दिनचर्या के कारण मैं इन चीज़ों के लिए समय नहीं दे पा रहा हूँ क्या आप इस विषय पर कुछ बात कर सकते हैं क्या विशेष रूप से एस्ट्रोनॉमी को युवाओं के बीच में कैसे पॉपुलर किया जा सकता है
मेरे प्यारे देशवासियों मुझे सुझाव बहुत आते हैं लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार का सुझाव शायद पहली बार मेरे पास आया है
वैसे विज्ञान पर कई पहलुओं पर बातचीत करने का मौका मिला है
खासकर के युवा पीढ़ी के आग्रह पर मुझे बातचीत करने का अवसर मिला है
लेकिन ये विषय तो अछूता ही रहा था और अभी 26 तारीख को ही सूर्यग्रहण हुआ है तो लगता है कि शायद इस विषय में आपको भी कुछ न कुछ रूचि रहेगी
तमाम देशवासियों विशेष तौर पर मेरे युवासाथियों की तरह मैं भीजिस दिन 26 तारीख को सूर्यग्रहण था तो देशवासियों की तरह मुझे भी और जैसे मेरी युवापीढ़ी के मन में जो उत्साह था वैसे मेरे मन में भी था और मैं भी सूर्यग्रहण देखना चाहता था लेकिन अफसोस की बात ये रही कि उस दिन दिल्ली में आसमान में बादल छाए हुए थे और मैं वो आनन्द तो नहीं ले पाया हालाँकि टीवी पर कोझीकोड और भारत के दूसरे हिस्सों में दिख रहे सूर्यग्रहण की सुन्दर तस्वीरें देखने को मिली
सूर्य चमकती हुई रिंग के आकार का नज़र आ रहा था
और उस दिन मुझे कुछ इस विषय के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे संवाद करने का अवसर भी मिला और वो बता रहे थे कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर होता है और इसलिए इसका आकार पूरी तरह से सूर्य को ढक नहीं पाता है
इस तरह से एक रिंग का आकार बन जाता है
यह सूर्य ग्रहण एक एन्यूलर सोलार इक्लिप्स जिसे वलयग्रहण या कुंडलग्रहण भी कहते हैं
ग्रहण हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि हम पृथ्वी पर रहकर अंतरिक्ष में घूम रहे हैं
अंतरिक्ष में सूर्य चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों जैसे और खगोलीय पिंड घूमते रहते हैं
चंद्रमा की छाया से ही हमें ग्रहण के अलगअलग रूप देखने को मिलते हैं
साथियो भारत में एस्ट्रोनॉमी यानि खगोलविज्ञान का बहुत ही प्राचीन और गौरवशाली इतिहास रहा है
आकाश में टिमटिमाते तारों के साथ हमारा संबंध उतना ही पुराना है जितनी पुरानी हमारी सभ्यता है
आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि भारत के अलगअलग स्थानों में बहुत ही भव्य जंतरमंतर हैं देखने योग्य हैं
और इस जंतरमंतर का एस्ट्रोनॉमी से गहरा संबंध है
महान आर्यभट की विलक्षण प्रतिभा के बारे में कौननहीं जानता अपनी काल क्रिया में उन्होंने सूर्यग्रहण के साथसाथ चन्द्रग्रहण की भी विस्तार से व्याख्या की है
वो भी फिलॉसॉफिकल और मैथमेटिकल दोनों ही एंगल से की है
उन्होंने मैथमेटिकली बताया कि पृथ्वी की छाया या शैडो की साइज का कैल्कुलेशन कैसे कर सकते हैं
उन्होंने ग्रहण के ड्यूरेशन और एक्सटेंट को कैल्कुलेट करने की भी सटीक जानकारियाँ दी
भास्कर जैसे उनके शिष्यों ने इस स्पिरिट को और इस नाउलेज को आगे बढ़ाने के लिएभरसक प्रयास किये
बाद में चौदहवींपंद्रहवीं सदी में केरल में संगम ग्राम के माधव इन्होंने ब्रहमाण्ड में मौजूद ग्रहों की स्थिति की गणना करने के लिए कैल्कुलस का उपयोग किया
रात में दिखने वाला आसमान सिर्फ जिज्ञासा का ही विषय नहीं था बल्कि गणित की दृष्टि से सोचने वालों और वैज्ञानिकों के लिए एक महवपूर्ण sourceथा
कुछ वर्ष पहले मैंने प्रीमोडर्न कुच्ची कच्छी नेविगेशन टेकनिक्स एंड वॉयेजेस इस पुस्तक का अनावरण किया था
ये पुस्तक एक प्रकार से तो मालम मालम की डायरी है
मालम एक नाविक के रूप में जो अनुभव करते थे उन्होंने अपने तरीक़े से उसको डायरी में लिखा था
आधुनिक युग में उसी मालम की पोथी को और वो भी गुजराती पांडुलिपियों का संग्रह जिसमें प्राचीन नेविगेशन टेक्नोलॉजी का वर्णन करती है और उसमें बारबार मालम नी पोथी में आसमान का तारों का तारों की गति का वर्णन किया है और ये साफ बताया है कि समन्दर में यात्रा करते समय तारों के सहारे दिशा तय की जाती है
डेस्टिनेशन पर पहुँचने का रास्ता तारे दिखाते हैं
मेरे प्यारे देशवासियो एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में भारत काफी आगे है और हमारे इनिशिएटिव्स पथ ब्रेकिंग भी हैं
हमारे पास पुणे के निकट विशालकाय मीटर वेव टेलीस्कोप है
इतना ही नहीं कोडाइकनाल उदघमंडलम गुरू शिखर और हानले लड़ख में भी पावरफुल टेलीस्कोप हैं
2016 में बेल्जियम के तत्कालीन प्रधानमंत्री और मैंने नैनीताल में36 मीटर देवस्थल आप्टिकल टेलीस्कोप का उद्घाटन किया था
इसे एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप कहा जाता है
ISRO के पास एस्ट्रोसैट नाम का एक एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है
सूर्य के बारे में रिसर्च करने के लिये इसरो आदित्य के नाम से एक दूसरा सैटेलाइट भी लॉन्च करने वाला है
खगोलविज्ञान को लेकर चाहे हमारा प्राचीन ज्ञान हो या आधुनिक उपलब्धियां हमें इन्हें अवश्य समझना चाहिए और उनपर गर्व करना चाहिए
आज हमारे युवा वैज्ञानिकों में न केवल अपने वैज्ञानिक इतिहास को जानने की ललक दिखाई पड़ती है बल्कि वेएस्ट्रोनॉमी के भविष्य को लेकर भी एक दृढ़ इच्छाशक्ति रखते हैं
हमारे देश के प्लैनेटेरियम नाइट स्काई को समझने के साथ स्टार गेजिंग को शौक के रूप में विकसित करने के लिए भी मोटीवेट करते हैं
कई लोग एमेच्योर टेलीस्कोप्स को छतों या बाल्कोनीज में लगाते हैं
स्टार गेजिंग से रूरल कैम्प्स और रूरल पिकनिक को भी बढ़ावा मिल सकता है
और कई ऐसे स्कूलकॉलेज हैंजो एस्ट्रोनॉमी के क्लब भी गठन करते हैं और इस प्रयोग को आगे भी बढ़ाना चाहिए
मेरे प्यारे देशवासियो हमारी संसद को लोकतंत्र के मंदिर के रूप में हम जानते हैं
एक बात का मैं आज बड़े गर्व से उल्लेख करना चाहता हूँ कि आपने जिन प्रतिनिधियों को चुन करके संसद में भेजा है उन्होंने पिछले 60 साल के सारे विक्रम तोड़ दिये हैं
पिछले छः मास में 17वीं लोकसभा के दोनों सदनों बहुत ही प्रोडक्टिव रहे हैं
लोकसभा ने तो 114 काम किया तो राज्य सभा ने निंटी फोर प्रतिशत काम किया
और इससे पहले बजटसत्र में करीब 135 फ़ीसदी काम किया था
देरदेर रात तक संसद चली
ये बात मैं इसलिये कह रहा हूँ कि सभी सांसद इसके लिये बधाई के पात्र हैं अभिनन्दन के अधिकारी हैं
आपने जिन जनप्रतिनिधियों को भेजा है उन्होंने साठ साल के सारे रेकॉर्ड तोड़ दिये हैं
इतना काम होना अपने आप में भारत के लोकतंत्र की ताकत का भी और लोकतंत्र के प्रति आस्था का भी परिचायक है
मैं दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों सभी राजनैतिक दलों को सभी सांसदों को उनके इस सक्रिय भूमिका के लिये बहुतबहुत बधाई देना चाहता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो सूर्य पृथ्वी चंद्रमा की गति केवल ग्रहण तय नहीं करती है बल्कि कई सारी चीजें भी इससे जुड़ी हुई हैं
हम सब जानते हैं कि सूर्य की गति के आधार पर जनवरी के मध्य में पूरे भारत में विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाये जाएंगे
पंजाब से लेकर तमिलनाडु तक और गुजरात से लेकर असम तक लोग अनेक त्योहारों का जश्न मनायेंगे
जनवरी में बड़े ही धूमधाम से मकर संक्रांतिऔर उत्तरायण मनाया जाता है
इनको ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है
इसी दौरान पंजाब में लोहड़ी तमिलनाडु में पोंगल असम में माघबिहु भी मनाये जाएंगे
ये त्यौहार किसानों की समृद्धि और फसलों से बहुत निकटता से जुड़े हुए हैं
ये त्यौहार हमें भारत की एकता और भारत की विविधता के बारे में याद दिलाते हैं
पोंगल के आख़िरी दिन महान तिरुवल्लुवर की जयन्ती मनाने का सौभाग्य हम देशवासियों को मिलता है
यह दिन महान लेखकविचारक संत तिरुवल्लुवर जी को उनके जीवन को समर्पित होता है
मेरे प्यारे देशवासियो 2019 की ये आख़िरी मन की बात है
2020 में हम फिर मिलेंगे
नया वर्ष नया दशक नये संकल्प नयी ऊर्जा नया उमंग नया उत्साह आइये चल पड़ें
संकल्प की पूर्ति के लिए सामर्थ्य जुटाते चलें
दूर तक चलना है बहुत कुछ करना हैदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुँचना है
130 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ पर उनके सामर्थ्य पर उनके संकल्प पर अपार श्रद्धा रखते हुए आओ हम चल पड़ें
बहुतबहुत धन्यवाद बहुतबहुत शुभकामनाएं